टेबल के ऊपर जूस रखे हुए हैं कोका-कोला और पावर ।

यह एक बहुत सुंदर घर है। घर लकड़ियों से बनाया गया है।

बाहर कुछ लोग खड़े हैं अभी दिन का मौसम है आसमान नीला है दो तार भी झूले हुए हैं।

एक घर का छत ब्ल्यू कलर का है और दोनों बिल्डिंग को स्किन कलर से पेंट किया गया है।

यहां पर सौ से ज्यादा बसता होंगे और ये सब बसता नीली और लाल कलर कि कपड़ो में रखी गई है।

यह एक यामाहा का शोरूम है जहां पर एक बहोत बड़ा बाइक है लाल कलर का और उसके डिजाइन लाल और ब्लैक से दी गई है।

ये आदमी जिम पर है और ये कसरत कर रहा है इसने ब्राउन कलर की गंजी पहनी हुई है इसके हाथों में लाल रंग की धागा बांधी गई है।

आगे में कुछ दुकानें हैं और रास्ते के बीच पे एक बहोत बड़ा क्लॉक है।

चेयर के ऊपर में एक बैनर है और उस बैनर में ब्लू शिंगटन लिखा हुआ है मेकअप एंड ब्यूटी सैलून हेयर स्टाइल ।

एक टेबल के ऊपर एक खाली बोतल रखी हुई है।

अंदर बहोत सुंदर दो ब्लैंकेट भी है सफेद रंग की और अंदर वॉल को व्हाइट कलर से पेंट की गई है और टाइल्स वुडन की है।

वो आदमी फोटो ले रहा है वो ब्लू कलर का पेहन के रखा है कपड़ा।

यह एक घर है घर के आगे एक बहुत बड़ा आंगन है आंगन में एक डिश लगाया गया है।

स्ट्रेंथ के दरवाजे शीशे से बनाये गये हैं और बम्बू से भी।